गाड़ी खड़ी हुई है सामने वाइट कलर की है बोलेरो है शायद ये बोलेरो लग रही है मेरेको।

जनता एंड पावर बैट्री बैट्री की ये शॉप है बैट्री कि--

और काफी लोग है अह लड़के लोग है जो कि अह ट्रैवल कर रहे हैं चल रहे हैं वॉक करते हुए जा रहे हैं और ये एच_डी_एफ_सी बैंक है जिसके बाहर ये बाइक --